बगल पे टाइल्स रखे हैं मार्बलस हैं बैनर लगा हुआ है चलने के लिए रस्ता है।

शीशा है सैलून है हेयर स्प्रे है।

आदमी लोग है तीन वाटर फिल्टर है लाइट्स लगे हुए है।

दो बच्चियाँ हैं हाथ में कैंडल पकड़ी हुई हैं नीचे में कारपेट है।

चर्च है लाइट्स लगे है टेंट लगे हैं डेकोरेशन है गेट लगा हुआ है कार्पेट बिछी है।

मछली है पन्नी है तराजू है बोरा है साइकल है बड़ी मछली है बहुत सारे लोग हैं।

मछली है तराजू है कारपेट बिछा हुआ है बॉक्स है।